और बहोत सारी सीढिया दिखाई दे रही है जो क्रीम कलर की है और मिटटी कलर की है और वाइट कलर की है।

और कुछ टीने दिखाई दे रहे है जो सिल्वर कलर के है इसमें बना हुआ है और कुछ बोरे दिखाई दे रहे है जो मिटटी कलर के है और वाइट कलर के है।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

कुछ लेदर का लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है और येल्लो कलर का है।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

और इसमें बहोत सारी बुक्स दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है ब्लू कलर की है ब्लैक कलर की है पिंक कलर की है और ग्रीन कलर की है और येल्लो कलर की है।

और कुछ मैग्ज़ीन रखे हुए दिखाई दे रहै है और एक बेड दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड वाइट कलर का है और एक सोफा दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

और कुछ बैनर दिखाई दे रहे है।

और दो परदे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है और कुछ फैन दिखाई दे रहे है जो ब्लैक कलर का है।

और कुछ ब्रेनचे दिखाई दे रही है जो मिटटी कलर की है और ग्रे कलर का है और कुछ लोग दिखाई दे रहै है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं।